ऊपर पर्दों से सजाया गया है काफी लोगों की भीड़ नजर आ रही है।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

इस चित्र में हमें एक ज्वेलरी की दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम सजावत ज्वेलरी है।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

मंदिर में काफी सारे जीने नजर आ रहे हैं।

मंदिर के आसपास पेड़ नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें कुछ डब्बे दिखाई दे रहें हैं जिनमें सफेद और भूरे रंग के डब्बे हैं।

इस चित्र में हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

इसमें हमें लाल गुलाबी सफेद रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बाहर एक गार्डन नजर आ रहा है।

यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर बाइक केयर लिखा हुआ है।

यहाँ पर गाड़ी का सामान मिलता है इंजन ऑयल और पेट्रोल की बोतल रखी हुई है।

इस चित्र में हमें एक द्वार दिखाई दे रहा है।

एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने चेक शर्ट पहनी हुई है।

यह शोरूम हीरो का है बाहर एक पेड़ नजर आ रहा है।

यहां हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में हमें एक बैंक दिखाई दे रहा है।

सलून को लकड़ी के फर्निश किया गया है।

सामने हमें एक पहाड़ नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक जगह दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें कुछ सब्जी के ठेले दिखाई दे रहे हैं।

सामने हमें विवो का एक फोन दिखाई दे रहा है।

एक परफ्यूम की बोतल नजर आ रही है साइड में एक दुकान बनी है जिसका नाम ग्लोब है।

जिसका नाम एसपायर लाइब्रेरी है।